इस इमेज में हमें एक घर दिखाया गया है घर के बीच में आँगन का फोटो है ये।

इस इमेज मे हमे एक कार को दिखाया गया है जो कि खुली हुई है आगे से।

इस पिक में हमें एक रोड को दिखाया गया है। इस रोड पर एक अम्बेसडर कार भी लगी हुई है।

इस इमेज में हमें एक किला को दिखाया गया है। किला के बीच में एक रोड जा रही है। रोड में कुछ गड्ढे भी हैं। गड्ढे के पास में पानी भी है।

इस इमेज मे हमे क्रिकेट के मैदान को दिखाया जा रहा है जिसमे की एक क्रिकेटर आगे बैट पकड़ कर खड़ा है बॉल इंतज़ार कर--